उसने कुछ सामान भी लिया हुआ है ये आदमी के पीछे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जिसकी डारी उसके पास दिखाई दे रही है।